बत्तख को देख रहे हैं उनके लेफ्ट साइड में काफी हरी पडी पौधे नजर आ रही।

और एक पानी का बॉटल रखा हुआ है।

नजर आ रहा है और काफी सारी अलग अलग प्रकार की प्रोडक्ट --